इस फोटो में हमें हरे घास का पार्क दिख रहा है।

चारों तरफ दीवार की गई है।

इस फोटो में हमें गंगा नदी दिख रही है जिसमें बहुत सारे--

जिसमें सात आठ सिड़िया लगी हुई है ऊपर जाने के लिए।

इस फोटो में हमें पेट्रोल पंप देख रहा है।

एक आदमी दिख रहा है दो औरतें दिख रही हैं।

जिसका नाम है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान--

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक आदमी काम करता हुआ देख रहा है।

इस फोटो मे हमें बहुत सारी--

ऊपर से बिजली की तारे जा रही हैं।

सामने एक टेबल दिख रही है।

जिसमें सामने हनुमान जी की फोटो दिख रहीं हैं।

सामने बहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है।

जो जो_सी_बी बी चला रहा है।

जिस पर पानी रखा हुआ है।

चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।